कुर्सियों में एक सफेद रंग का है और गद्दी लगी हुई है| कुर्सियाँ इस्टील की बनी हुई है।

दो रास्ते हैं जिसमें नीचे लाल कलर की टाइल्स लगी है और पीले कलर की टाइल्स लगी है।

इसके दो पंजे है जो की पीले रंग के है और एक चोंच है जो की पीले कलर--

एक सड़क है जिसमें बरसात के कारण पानी भर चुकी है एक आदमी है जो कि अपने कपड़ों को ऊपर करके पैदल चल रहा है उसके पीछे एक बस है जो की नीले कलर का है।

चारों ओर हरे-भरे घांस दिख रहे हैं जो की एक बराबर है और काफी एक सपाट घांस है |

जो कि कपड़े के डब्बे हैं जो रंग-बिरंगे हैं पीले कलर के नीले कलर के और हरे कलर के डिब्बे हैं और कुछ सफेद कलर के भी डिब्बे हैं।

उसके पीछे बहुत सारी झाड़ियां हैं जो की बहुत घने है और कुछ पेड़ भी है और कुछ घास है जो कि सभी हरे-भरे हैं।

तिरंगे में तीन रंग है संतरे कलर का है और सफेद कलर का और हरे कलर का | सामने एक औरत है और एक छोटी बच्ची है।